भी लगा हुआ है। जिस पर एस.एस मॉल लिखा हुआ है।

यहाँ एक सब्जी मंडी दिखाई गई है। यहा अनेको प्रकार की सब्जी रखी हुई हैं व टीन की झोपड़ी बनी हुई दिखाई गई है।

यहाँ एक रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाया गया है जिसका नाम अतिथि फॅमिली रेस्टोरेंट रखा गया है।